इस तस्वीर में मुझे एक एंटीना भी दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में पेड़ पौधों नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा बड़ा बड़ा मछलियां दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बैलून सीट और फ्रेम्स भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रहा है।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक इंसान भी नजर आ रहा है और उसमें कई सारा कपड़ा सुखाते हुए भी दिखाइ दे रहा है।

तस्वीर में मुझे टोकों पर से बनाया हुआ दो घर दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे और लंबे लंबे फैंसिंग्स नजर आ रहे है।

इन फेंसिंग्स के दौरान एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

घर के आगे बहोत सारे चेयर्स भी नजर आ रहा--

बिल्डिंग के आगे मुझे दो बस भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहोत अच्छी बादल दिखाई दे रही है।

इस केक के ऊपर बहोत सारे तरह तरह की चॉकलेट्स नजर आ रहा है जिसमें डेयरीमिल्क किटकैट ओरियो भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग और एक लंबी सी पेड़ भी नजर आ रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक हॉल नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे कपड़े प्लास्टिक में रैप करके वार्डरोब में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।